ये एक लड़के की दुकान का चित्र दिखाई दे रहा है और ये लड़का बाल के दुकान में अपने बाल कटा के दिखा रहा है और ये --

ये एक ये एक दुकान के दुकान के बाहर का चित्र दिखाई दे रहा है और इधर कई सारे --

ये एक मंदिर का चित्र दिखाई दे रहा है और ये ग़ुफ़ा के अंदर एक मंदिर बना हुआ है।

और ये गाड़ी सुधरने ने के लिए आई हुई है और इस गाड़ी के अगल-बगल कई सारे पार्ट वगैरह रखे हुए हैं और इस गाड़ी के बगल में एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ --